बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की खिड़कियां दिखाई दे रहो है। गुंबत दिखाई दे रही है जिसपे आकृति बनी हुई है ऊपर की तरफ एक पिलुमिनर दिखाई दे रही है जिसपर खिड़कियां बनी हुई है।

पीले कलर का है पीछे रेलिंग दिखाई दे रही है जो की स्टील की बनी हुई है इस पर काले रंग से ऊपर कुछ लिखा हुआ है ऊपर फर्श दिखाई दे रहा है स्पर लाइटे जल रही है पीछे की दीवार दिखाई दे रही है।

सामने दीवार दिखाई दे रही है जीसपर आकृती बनी हुई है सामने लोग दिखाई दे रहे है महिलाये दिखाई दे रही है पीचे आऊट लेट्स दिखाई दे रही है जहा पे लाइटे जल रही है।

एक मंडप सजा हुआ है जिसमे एक दुल्हा दुल्हन बेटे हुए है एक पंडित जी बेठे हुए है जहा पूर्ण ब्राउन रंग की टोपी बनी हुई है दूल्हा दुल्हन सुंदर कपड़ोसे सजे हुए है सामने--

नीचे बिजली के ता एक लाइटे से बंधे हुए है जहा तक पानी पानी दिखाई दे रहा है पहाड देखाई दे रहा है नीचे मिट्टी पर हरी हरी घास चारो तरफ फैली हुई है जिसपर पत्तिया लगी हुई है।

नीचे कै सारे लोग बने हुए हई जिन्होंने सर पर सेहरा बांधा हुआ है आगे जिन्होंने ऑरेंज रंग की ड्रेस पेहन रखी है सफेद कुरसिया पडी हुई है जिस्पे लोग बेठे हुए--

एक तोप दिखाई दे रही है जो की एक लकड़ी की बनी हुई है इसमे पैय्ये दिखाई दे रही है आगे का सिरा दिखाई दे रहा है जिसमे गुल आकृति बनी --

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे सफ़ेद रंग है उस पे हरे रंग का कुछ लिखा है नीचे गेट दिखायी दे रहा है जो की पेड़ की आकृती मे बना हुआ है जिस पे छोटे छोटे पत्तों की आकृती बनी हुयी है एक लग रहा है।

नीचे गिरी हुई हरी हरी घास चारो तरफ फैली हुई है पेड दिखाई दे रहे है पेडो की टेहनीया दिखाई दे रही है जोकी इन्कि टेहनीया बहुत दूर दूर फेहली हुई है और बहुत ज्यादा मात्रा में यह पेड बहुत दूर तक दिखाई दे रहे है।

यहा पर एक फॅक्टरी का दृष्य है। जिसमे नीचे प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। जहा पर मशीन लगी हुई है। मशीने बहुत ज्यादा मात्रा में ऊपर फैली हुई है। पीछे एक रॉड दिखाई दे रही है निचे --

पत्थर जो है बहुत ज्यादा मात्रा दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ो को टेहनीया दिखाई दे रही है हरी-हरी घास दिखाई दे रही है जोकी चारों तरफ फेली हुई है और बहुत ज्यादा पेड़-पौधे दिखाई दे रही है।

जिन पर काले रंग की बनी हुई है पीछे दीवार दिखाई दे रही है जहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ तस्वीर लगी हुई है उस पर आकृतीया बनी हुई है निछे सफ़ेद रंग का कागज दिखाई दे रहा है।